ईटो वाला घर बना है बड़े लम्बे-लंबे ऊंचे पेड़ है एक बाइक खड़ी है।

और ये लड़का चप्पल पेहना है और पिंक कलर की टीशर्ट पेहना है।

गेट के ऊपर कत्थई कलर का पेंट है।

ये सन राइस पब्लिक स्कूल हैं।

फाउंटेन भी है बिल्डिंगे बड़ी-बड़ी है वो सजी हुई है लाइटो से बच्चे खड़े हैं।

और लड़का और औरते आदमी खड़े है फाउंटेन जारी है।

बाकी बहुत बड़े-बड़े पेड़ बहार लगे हुए है उपर असमान है नीचे कजी भी हैं।